और लेफ्ट साइड की दीवार तो क्या ही बोलूं क्या ही बेहतरीन दिख रही है और ये एक रेड कलर शर्ट पहनकर एक आदमी आ रहा है |

ये फेमस न श्री जी का फास्ट फूड सेंटर है यहाँ ना आप --

काफी सून-सान और डरावना सा जंगल है जो देखने पर लोग डरे जाते है।

फैक्ट्री है ये जिसमे सब काम कर रहे हैं अपना-अपना